जोकि एक बिल्डिंग है जिसकी तैयारी बहुत अच्छे से हुई हैऔर इसके अगल बगल मे बोहोत अच्छे प्लांट लगे हुए है जोके बोहोत खूबसूरत लग रहे है।

इनके पास बैट बल्ले रखे हुए हैं और कैरम भी रखा हुआ --